लाइटों की पोस्ट भी बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं।

बोर्ड पर लिखा है भीष्मनगर फोर्ट ।

यह एक घड़ी का दुकान दिखाई पड़ता है।

बहोत सारे प्रकार के घड़ियां है।

लड़का काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है।